है और नेक्स्ट स्टेज पर दिखाई दे रही है |

यह फोटो इवनिंग टाइम की हैं जिसमे की आगे की साइड पार्क नज़र आ रहा हैं और एक छोटा-सा स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा --

ये है पिज़्ज़ा हट के ऊपर एक सिटी कार्ड भी दिखाई दे रहा है जिसमें लेडिस जेंट्स बच्चों के कपडे दिखाई दे --

फोटो किसी पार्क की है जिसमें छोटे बच्चों के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है और आगे की साइट भी एक पुलिया जैसा कुछ बनाया गया है।

फोटो आई.सी.आई.सी. बैंक का हैं जिसमें की आई आई बैंक का सेम्बल लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये ये है बिल्डिंग व्हाइट और स्कीबलुए कलर में दिखाई दे रही है।

ये किसी पार्क का नजर आ रहा है पार्क के रोड के जिसके लेफ्ट हैंड में अशोक के पेड़ दिखाई दे रहे --

एक आदमी बैठा है जो लैपटॉप चला रहा है और कुछ आदमी खड़े हुए हैं जो सामान ले रहे हैं।

यह फोटो किसी बिल्डिंग की नजर आ रही है जिसमें की बिल्डिंग को चार-पांच कलर से पेंट करके डिजाइन किया गया है और इसके बाहर की ओर चदर का सीन भी नजर आ रहा है और इसके पीछे कुछ पेड़ भी नजर आ --

निचा की साइड ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है | इसके ऊपर भी बहुत सरे चार्ट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं |

यह फोटो केनरा बैंक का दिखाई दे रहा है जिसमें एक साइड में केनरा बैंक का बहुत बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है।